यह एक घर का दृश्य है।

उसमें दो गेट लगे हुए हैं गेट का कलर स्लेटी कलर है।

घर के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और छोटे छोटे सो प्लांट भी लगे हुए हैं।

यह एक किताब दुकान का दृश्य है।

उसके बगल में एक डिब्बा रखा हुआ है।

के आगे सोमनी लिखा हुआ है।

खेत के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस कमरे में दो चेयर रखे हुए हैं ग्रे कलर के।

और कुछ बटखारे रखे हैं।

यह एक रूम का दृश्य है।

टेबल ब्राउन कलर का है।

यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है।

नीचे में छोटे छोटे घास लगे हुए--

यह एक बिल्डिंग का दृश्य--

गार्डेन में बहुत सारे शो प्लांट लगे हुए हैं।

नदी के आगे बड़े बड़े पहाड़ हैं।

दुकान के अंदर पिंक कलर का पेंट किया गया है।

और कुछ वाहन पार्क किए हुए--

और बहोत सारे कार पार्क की गई है।

यह एक तालाब का दृश्य है।

और नीचे में छोटे छोटे घास भी हैं।

उसमें एक खिड़की बना हुआ है।

इसके जमीन पर छोटे छोटे हवन कुंड बने हुए हैं।

यहां पर ईख भी रखा हुआ है।

इसके काउंटर पे छोटे छोटे आटे की बोड़ीया रखी हुई है।

बगीचे में पूरा चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है।

बैंच के ऊपर काला हेलमेट भी रखा हुआ है।

बाउंड्री का कलर ग्रीन है।

और अलग अलग मॉडल के बने हुए हैं।

और दूसरे बोट पर दो स्त्री हैं।

इस कमरे में टेबल है।

यह एक खुले मैदान का दृश्य है।

सभी पेड़ के जड़ में वाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

इस ग्राउंड में एक लाईन वाला पोल भी है।